पीछे भी दो व्यक्ति बैठे है।

किला बहुत पुराना लग रहा है नीला आसमान और सामने किला और नीचे हरे-भरे पेड़ बहुत सुंदर लग रहे हैं।